सामने मैदान है। मैदान में घास है। कुछ घास हरी है और कुछ सुख गई है।

आसमान में सफ़ेद बादल है ।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा है सुधा मिल्क पार्क पार्लर ।

सामने काफी सारे लोग हैं। तीन लड़के खड़े हुए हैं और एक लड़का उन तीनो की फोटो ले रहा है।

उसके पीछे ऊंची-ऊंची पहाड़ी नज़र आ रही है। पहाड़ियों पर हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं।

सामने एक आदमी कुछ सफ़ेद पन्नो पर लिख रहा है।

सामने कुर्तियां टंगी हुई हैं और दूर पर ब्लाउज़ टंगे हुए हैं।

यहाँ सामने एक औरत ने मक्के के छिलके का डिजाइनर फूल बनाया हुआ है।

जिसने एक बैग टांग रखा है और उसने चस्मा लगा रखा है। उसके हाथ मे एक इंची टेप है। जिससे वो जमीन की चौड़ाई माप रहा है।

किनारे काफी सारी टोकरियाँ प्लास्टिक की रखी हुइ हैं।

सामने एक आदमी हस रहा है। दूर-दूर पर बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ सामने हरे रंग का एक मैदान है सामने ईटे की कुछ दीवारे खड़ी की गई है ।

सामने एक पैलेस है। पैलेस बहोत बड़ा है। पैलेस को लाइटों --